बड़ा सा हॉल बना हुआ है जिस हॉल में अगल-बगल दीवारे है और एक खिड़कियाँ लगी हुई है परदे लगे है अ पुरे फूल से सजा हुआ है लाइट लगी हुई है ए.सी. भी लगी हुई है।

रेलवे स्टेशन है जे ए स्टेशन के में-में कुछ कुर्सियाँ-कुर्सियाँ लगी हुई जो कुछ लोग बैठे हुए है एक औरत जो जा रही है व-वो सिर पे समान रखी हुई है और एक आदमी खड़ा हुआ है ट्रेन प-चल रही है बादल सफेद काले--

एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है जिस तालाब में एक पानी भरी हुई है अगल-बगल भी ये कुछ मैदान बनी हुई है जिसमें हरे घास जमे --

कुर्सियाँ रखी हुई इसके बगल में एक गाय जो बैठी हुई है एक का एक काले कलर का गाड़ी रखा हुआ है।

एक स्टेशन है जो स्टेशन के में कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और ट्रकें जो रास्ता बना है जिससे ट्रकें ट्रकें चल रही है| अगल-बगल जो सामने मकाने भी बने हुए हैं और अ-ज-जो पटरियां जो खाली हैं।

एक स्कूल है स्कूल के जो स्कूल के सामने एक अ नीले और लाल कलर का गेट लगा हुआ है और आ और जो अंदर साइड पेड़-पौधे हैं जो हरे-भरे भी हैं हरी पत्तियाँ हैं बादल नीली हैं।

एक जो सामने ए नीले हरे कलर का लाल कलर का गेट लगा हुआ है और दीवारों में दीवारों में कुछ लिखे हुए हैं और अंदर साइड पे भी दिख रहे हैं जी --

उसके अन्दर केक वगैरा रखी हुई है ऊपर लाइटें लगी हुई है।

कृष्णा गारमेंट्स था जिस कृष्णा गारमेंट्स के सामने काउंटरे लगी हुई है और अ-अगल-बगल जो कुर्सियां में ए बैठे हुए हैं।